यहां पे लड़कियां सब पुतला बन के खड़ी है और कपड़ा उसको पहनाया गया है ताकि वो देखने में बहुत अच्छी लगे और इसके अगल-बगल भी बहुत अच्छे-अच्छे सीन है जो--

फलर्सोफ़ा तरह तरह की मिलती है और यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगाया गया है ताकि वो दिखने में बहुत--

के पीछे बहोत बड़े-बड़े घास है बहुत अच्छे उसको लगता है और पानी में बहुत नहाती है।

जो अपने कन मन किया वो आकर करे यहाँ पर लाइट पंखा ऐ_सी कूलर सब लगाया गया है।

और जो ट्रैक्टर पे बैठे हुए अंकल वो उनसे बात कर रहे है और हो और इसका सीन बहुत अच्छा लगा यहां पे तीन चार--

ये बहुत बड़ा ही स्कूल है जिसमें पढ़ाई होता है बच्चे हर तरह-तरह के आते है और पढ़ाई कर कर जाते है ताकि वो--

महरून कलर की साड़ी पहनी है और खारीहै वो और किसी को देख रही है ध्यान से--

एक अंकल है जो बैग लेकर जा रहे है और एक अंकल है जो आ रहे है यहां पे विजय बुक और टेक्टरी है।

यह एक बहुत बड़ा ही अच्छा ओती हॉल है जिसमे--